के लगभग बॉर्डर का रंग लाल और जैसा है और सामने सीढ़ी है और उसके बगल में लोहे का रेलिंग है।

अगल बगल बहुत सारे हरे हरे पेड़ है।

अंदर ढेर सारा सामान रखा है और नीचे पानी की जार रखा हुआ है।

कुछ आदमी गेट के पीछे और कुछ बाहर है।

बहुत सारे पेन टांगे हुए हैं बीच में एक टेबल है।

पीछे के बैकग्राउंड का रंग लाल है उसपे हरे और पीले रंग से कुछ लिखा है और पीले रंग का लाइट जल रहा है।

ऊपर का हिस्सा का रंग ग्रे और सफेद है और नीचे के हिस्से का रंग ग्रे और लाल है।

पीछे एक बड़ा सा भूरे रंग का पेड़ है।

इस फोटो में एक बड़ा सा तालाब है और साइड साइड से सीधी जैसा बना है।

नीचे सीमेंट का ढलाई है और सरिया निकला है।

पीछे ढेर सारा छोटा छोटा हरा और पीले रंग का घास जमा है।

इसके पीछे ढेर सारा गाड़ी भी बाइक खड़ा है।

उसपे नीले रंग का गद्दा है और पीछे एक बड़ा सा लकड़ी का चेयर है जोकि सफेद रंग के गद्दे लगे है उसपे और उस चेयर का रंग भूरा है।

एड में एक भूरे रंग का कैंपर है आसमान में बादल निकला है।

पीछे बहुत सारे हरे रंग के पेड़ है और छोटे छोटे पौधे भी है।

पीछे दो स्टील के चेयर है जो की ग्रे कलर के है बाहर के शटर का रंग लाल है।

इस फोटो में एक बड़ा सा झूला है जोकि बीच में एक लाल हरा रंग के स्टैंड पर खड़ा है अगल बगल उसमें से निकला है जोकि हरा और नीले रंग का है।

इस फोटो में एक बड़ा सा हॉल है जिसमें सामने की ओर एक मेन गेट हैं जो कि लोहे का चैन गेट है।

ऊपर का रंग सफेद है और एक पंख लगा है।

उसी के जस्ट ऊपर एक छोटा सी_सी_टी_वी कैमरा है और बहुत सारा नमकीन टांगा हुआ है।